शरीर की मांसपेशियां जो हैं फिट रहती हैं खुल जाती हैं। हमारा शरीर एक तरीके से फिट महसूस करता है।

ये जो तस्वीर हम देख रहे है ये एक मोबाइल शॉप की तस्वीर है।

ये सीढियां बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और बहुत ज्यादा ऊंची है इन सीढियों के अंत में जो है एक बहुत बड़ा भव्य गेट बना है।

ईसाइयों के यहां हो रहा है और इसमें काफी अच्छे लगे हैं।